और कोई दिक्कत नहीं है और एक नंबर हो रहा है रामलीला।

और हमको बहुत बढ़िया लग रहा है लेडीज --

फिड्रली बैंक है।